दुकान के बाहर तंबू लगे हुए हैं सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर ऊपर लाइटें भी जली हुई है कांच के ग्लास भी रखे हुए हैं।

उसके सामने एक होटल दिख रही है।

एक व्यक्ति ने लाल कलर की शर्ट पेहन रखी है।

सामने सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक कैफे नजर आ रहा है।

उसके आगे एक बतख बैठी हुई है जोकि स्टेचू है।

मकान के बाहर टाइलें लगी हुई है।

एक व्यक्ति जो पीले कलर की टी शर्ट पहेन रखा है।

यहां पर एक धरमशाला दिखाई दे रही है धरमशाला के बाहर पौधे नजर आ रहे हैं।